और इसका अच्छे से डेकोरेशन हो जाये तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी है।

ये एक घर है और ये तो घर होगा या ऑफिस होगा मतलब यहाँ पे काम चल रहा है।